अ ऊपर एक पंखा भी है अ उधर प ब्राउन कलर का पर्दा लगा हुआ --

ये लग रहा है कि कहीं का रोड है ठीक है इधर ढेर सारा साइकल लाइन से लगा है।

यहां पे एक बहोत सारा प्लांट है।

बहुत सारे नीचे जमीन पे पत्ते झड़े हुए है।

का रूम है इसके अंदर एक सिंगल बेड लगा हुआ है।

इस साइड में भी इ खूब घना हुआ प्लांट दिख रहा है और अगल इधर साइड में छोटा-छोटा प्लांट दिख रहा है।

लाब गुलाबी कलर का फूल दिख रहा है उधर भी रंग बिरंगे दिख रहे हैं इधर बैंगनी कलर का भी दिख रहा है।

के इस साइड में एक टायर है टायर पे एक आदमी बैठा है डंटा लिया है औ--

इधर जांगला दिख रहा है यहां पे बीच में व्हाइट वाइट कपड़ा पहन के--

इधर एक एक साइड में रेड कलर से और वाइट कलर से मतलब डिजाइनिंग में दिख रहा है।

और बीच बीच में भी प्लांट भी दिख रहे हैं कोई कोई प्लांट में बहुत सारे मतलब फूल भी फेरे हुए हैं।